हरे हरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे फुल उल लगाए गए --

मुझे इस फोटो में सामने की तरह हरे हरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे सामने--

इधर चीजे रखी हुई दिखाई दे रही हैं सामने की ओ--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर अपना रेस्टोरेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है --

दिन का समय हरे-भरे पेड़-पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं सामने पे एक एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई --

इस फोटो के सामने जो दीवार दिखाई दे रही ऊपर को--

सबके बने हुए दिखाई सामने एक नदी बन रही पानी बहता हुआ--

किया है डी आजू बाजू की दीवालो में--

मुझे इस फोटो में सामने कितने सारे हरे भरे पेड़-पौधे लगे दिखाई दे रहे सामने काफी सारे --

सामने की ओर हरी भरी घास फूस लगी हुई दिखाई दे रही है कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं सामने--

दिन का समय दिखाई दे रहा है सामने की ओर--

मुझे इस फोटो के सामने बहोत सी--

हरे भरे पेड़ पौधे घास पुस लगे दिखाई दे रहे--

एक एक दुकान खुली दिखाइ इ--

लाल कलर के टॉवेलोंकी की साईझ रखे हुई दिखाई दे रही नीचे को--

सामने की ओर दो कुर्सियां रखी दिखाई दे रही बेंच ए_सी दिखाई दे रही है साम--

दिखाई दे रहे है सामनेही।

सामने की ओर झंडा लगा हुआ दिखाई भारत माता का झंडा लगा हुआ दिखाई दे --

नीला आसमान व्हाइट कलर के बादल वादल दिखाई दे रहे हैं सामने बाकी सारे--

दिखाई दे रहे हैं सामने हरे भरे पेड़ पौधे--

पीछे इंसान घुमता आजू-बाजू के सब बड़े-बड़े --

पर्दा लगा हुआ दिखाई दे पीली कलर की लाइटिंग लगाई गई आजू बाजू सब कपड़े वपडे--

व्हाइट कलर की लाइटिंग वाइटिंग लगाई गई है नीचे की ओर।

नीचे मे फल--

कई सारे पर्दे वर्दे दीवालों की तरह बैनर वैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

किसी ऊपर के के डिब्बे बिल्कुल बिस्किट के पैकेट देखे--

मुझे इस फोटो में स सामने सो शुभम मेडिकल एक चे--

एक शटर लगी दिखाई दी अंडर के टेबल पे सारी बेंच वेंच--